स्कूटी खड़ी देखी जा सकती है | इसमें कुछ एने लगे हुए देखे जा सकते हैं | पीछे भी कुछ बाइकें खड़ी देखी जा सकती हैं।

यहाँ पर एक बड़ा-सा भवन जैसा कुछ देखा जा सकता है जिसके आगे स्टेज जैसा बनाया गया है जिसके ऊपर कुछ लोग खड़े हुए है आगे भी कुछ लोग खड़े देखे जा सक --

अगल-बगल बड़ी-बड़ी लाइटे देखी जा सकती है जो जल रही है वो काफी उजाला कर रही है भवन का कलर हारा में दिखाई दे रहा है तथा उसके ऊपर कुछ पीले कलर बैजिंग की गई है सभी में कुछ मूर्ति जैसा बनाया गया है।

मछलियां रखी गई है जो सफ़ेद कलर के देखे जा सकते है अगल-बगल कुछ व्यक्ति देखे जा सकते है एक बूढ़ा व्यक्ति साल लपेट कर मछलियों को देखता हुआ नजर आ रहा है पीछे भी कुछ लोग देखे जा सकते है।

जो सफ़ेद कलर का शर्ट व जीन्स जैसा कुछ पेहना हुआ है जो चप्पल भी पेहना हुआ है उसके बगल में भी एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा देखा जा सकता है नीचे धरती देखी जा सकती है जिसके ऊपर कुछ पत्थर फेके गए हुए है जो छोटे-छोटे व बड़े-बड़े देखे जा सकते --